यह आगे में दो बच्चे भी बैठे हुए हैं।

यह एक दुकान का चित्र है जो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का है।

के आगे में एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है पैरीवेयर ऑलवेज इन फैशन

यहां एक खिड़की भी बहुत बड़े बड़े हैंजो ऊपर में तीन और नीचे में भी दो है।

ऊपर में दो बहुत ही बड़े बड़े गमले में बहुत सारी पौधे जैसी सजावट के र टंगे गए हैं।

यह एक एकेडमी है।

और एक व्यक्ति है जो ब्लैक कलर की पेंट और कथा कलर की शर्ट पहने हुए हैं जो इसे सीखा रहे हैं।

एक पोस्टर भी है जिस पर साड़ी की प्लास्टिक में रखी गई है।

एक तराजू भी रखा गया है जिससे इसके मालिक बेच रहा है।

इसका स्थापना उन्नीस सौ तिरानबे में हुआ था।

आगे में कुछ कुर्सियाँ भी रखी गई हैं जो और कुछ टेबल भी रखी गई है।

बगल में दो तीन रिक्शा भी जा रही है उधर और एक घर भी है जिसके बगल में एक बहुत बड़ी लोहे की पाइप और इसमें लाइट लगाई गई है।

यह एक जंगल का चित्र है। जिसमें से यहां पर बहुत बड़ी पत्थल की चट्टानें है जिसमें पानी रिस रहा है।